इस तस्वीर में फीमेल जनरल वार्ड का बोर्ड दिखाई दे रहा --

ये वार्ड सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया हैं दरवाजा पुराना और थोड़ा सा डैमेज लग रहा हैं।

कमरे में दो बड़ी खिड़कियां हैं जो रोशनी को अंदर आने दे रही है।

इस तस्वीर में एक बड़ा ब्रिज दिखाई दे रहा है जो नदी के ऊपर बना हुआ है।

चर्च पर रंगबिरंगे पटकाए और सजावट कि गई है।

रथ को सुंदर फूलों और पट्टो और कपड़ों से सजाया गया है।

वहां लकड़ी की ट्रेडिशनल सोफा सेट और सेंटर टेबल रखे गए हैं।

एक आदमी सोफा पर आराम से बैठा हुआ दिखाई रहा है।

ठीक उसके बाजू में एक गमला है जिसमें हरे भरे पौ पौधे लगे हुए हैं।

आगे एक बैरिकेड रखा हुआ है और जस्ट आगे एक कार दिख रही है जो की है आई टेन ।

एक सफेद कार का बोनट खुला है और उसकी मरम्मत की जा रही है।

एक आदमी ने पिंक और येलो टी_शर्ट पहेनी हुई है जो कार के पास खड़ा है।

नीचे की तरफ कलरफुल स्लाइड्स और चढ़ने के लिए सीढ़ियां दिखाई दे रही है।

पूल के एक कोने में पानी से खेलने वाले रैंबो आर्चीज भी लगे रहे हैं।

यह एक संगीत कक्षा लग रही हैं जहां पर क्लासिकल म्यूजिक के इंस्ट्रुमेंट रखे गए है।

बिल्डिंग के सामने काला भवन लिखा हुआ है जो शायद एक कल्चरल या आर्ट सेंटर हो सकता है।

और होटल के ऊपर एक छत बनाई गई है लोफन की।

तस्वीर में एक पतला पूल दिख रहा है जो पानी के ऊपर से जा रहा है।

मशीन के मॉडर्न डिजिटल फ्यूल डिस्पेंसर लगा रहे है।

पहले दो व्यक्ति सफेद कपड़ों में हैं और ट्रेडिशनल अटेर में खड़े हैं।

और ऐसा लग रहा है जैसे बारिश का मौसम हो --

और इस लड़के ने सफेद शर्ट और ब्लू जींस पहनी हुई है।

यह तस्वीर एक मंडी की लग रही है जिसमें ढेर सारी आम कच्चे आम रखे गए हैं।

इमेज में एक मेला या प्रदर्शनी जैसा सीन दिख रहा है जो रात के समय का है।

टेज के ऊपर कलरफुल लाइटिंग और झालर लगाई गई है जो फेस्टिव एटमॉस्फेयर बनाता है।

इमेज में एक बिल्डिंग का पार्किंग एरिया दिख रहा है।

इसमें एक फर्नीचर भी दिख रहा है जो कि वुडन कलर का है।

इमेज में एक आदमी फॉर्मल सूट और टाय में खड़ा है जो किसी शादी या रिसेप्शन फंक्शन का लगता है।

पानी के दोनों तरफ बड़े बड़े पत्थर हैं जो इस दृश्य को और भी सुंदर बना रहे है।

यहां के वातावरण शांत और प्राकृतिक लग रहा है।

एक बाई तरफ एक सफेद रंग की इमारत है।

यह चित्र एक प्राकृतिक दृश्य दिखाता है जिसमें एक झरना और चट्टानें शामिल हैं।

चट्टानों के ऊपर हरी भरी वनस्पति दिखाई दे रहीं हैं जो क्षेत्र में हरियाली का संकेत देती है।

होटल के सामने कई प्लास्टिक की कुर्सियां और टेबल लगाई गई है।

बोर्ड पर लिखा है कि ये होटल नाश्ता और भोजन दोनों प्रस्तुत करता है।

होटल के दोनों तरफ शट्टर वाले दो कमरे भी दिखाई दे रहे हैं।

प्लेटफार्म के ऊपर लंबे शेड्स लगे हुए जो पैसेंजर को धूप और बारिश से बचाते हैं।

और यहां पे बारिश भी थोड़ी थोड़ी देखी जा सकती हो --

इस इमेज में एक पिंक रंग का घड़ी वाला टावर दिख रहा है।